ये लग रहा है की यहाँ पे कुछ काम चल रही है।

जो ऊपर की तरफ ढ़लाई कर रहे हैं।

घर के रंग-बिरंगे घर बहोत सुंदर लग रहे हैं।

ये कोई रेस्टोरेंट की तस्वीर है।

इस तस्वीर में मुझे शादी का हॉल नजर आ रहा है।

जिसमें बोहोत सारे खिड़की है।

जहाँ पे एच.पी. लिखा हुआ है।

और वहाँ पे ये लोग को अच्छा लग रहा है।

सामने एक ए.सी. नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बोहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

और यहाँ पे अगल बगल बोहोत सारा पिल्लर भी लगा हुआ है।

हर तरफ हरियाली ही हरियाली है।

ये तस्वीर मुझे किसी पार्क का लग रहा है जिसमें दो तीन झूले लगे हुए हैं।

ये तस्वीर बहुत सुन्दर लग रही है यहाँ पे नौका चल रहा है ये किसी झील की तस्वीर है।

ये तस्वीर में मुझे एक घर दिख रहा है जिसके दीवार में बहुत सारे तस्वीर दिख रही हैं।

ये मुझे एक स्कूल लग रहा है जहाँ पे हिंदी पे ये स्कूल का नाम लिखा हुआ है।